यहा पर एक खुर्सी दिख रहा है।

यहां पर दो स्कूटी है यहां पर एक स्कूटी खड़ा है।

यहां पर बहोत सारे कुर्सी लगे हैं यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं यहां पर लाईट लगा है यहां पर पंखा लगा है।

यहां पर खेलना का झूला है यहां पर हरे हरे पेड़ पौधे हैं।

यहां पर लोहे का गेट लगा है।

यह एक ऑफिस है।

यहां पर फूलों की माला बिक रहा है।

यहां पर माइक दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे खुर्सी लगा हुआ है।